मुझे एक ऑफ़ मुझे एक ऑफिस दिख रहा हैगा। ऑफिस दो तीन काउंटर हैंगे वो सारे काउंटर दिख रहे हैंगे जो ब्लू कलर की हैंगे और तीन शटर दिख रही हैंगी जो --

ग्रे कलर की हेंगी और एक फैन दिख रहा मतलब पंखा दिख रहा हेंगा जो ब्लैक कलर का है और कौन काउंटर के ऊपर काउंटर के बाजु में चेयर भी दिख रही हैं ।

मुझे मुझे एक बिल्डिंग दिख रही हैंगी जो ऑरेंज कलर की हैंगी और बिल्डिंग के नीचे दो शॉप दिख रही हैंगी।

नीले से कलर के हेंगे और व्हाइट कलर के हेंगे और नीचे घाँस दिख रही हेंगी। छोटी-छोटी सी है। दो-तीन बच्चे दिख रहे हेंगे वो खेलते हुए हेंगे और एक बोर्ड दिख रहा हेगा।

और अ मंदिर के नीचे मतलब दो-तीन शटर दिख रही होंगे जो व्हाइट कलर की होंगे और आजु-बाजू डिज़ाइन बनी हुई है मंदिर के नीचे।

मुझे एक सड़क दिख रही है सड़क पे बोहोत सारे लोग दिख रहे हेंगे दो-तीन स्टोर दिख रहे हेगी मतलब दो-तीन घर से दिख रहे हेंगे।

यल्लो कलर की और दो मतलब पलंग सी दिख रही हेंगी। एक एक हेगा ब्लैक कलर का और एक हेगा ब्लू कलर का। दो लोग दिख रहे हेंगे।

बीच में मतलब पत्थर से होंगे ब्लैक कलर के और एक दो तीन टंकियाँ --

ब्लू कलर का हैगा और पार्क में बाउंड्री बनी है व्हाइट और --

मुझे प्रदर्शनी दिख रही है। प्रदर्शनी में मतलब दो तीन झूले दिख रहे हेंगे जो बड़े-बड़े से गोल-गोल से हेंगे ।

मतलब कुछ छोटे-छोटे से छप्पर से दिख रहे हैंगे और जो घर के पीछे --

दो बोर्ड दिख रहे हेंगे जिसमें लिखा हेगा भगवान् दास साहू गेस्ट हाउस लिखा हुआ हैगा और घर के सामने एक ऑटो खड़ा हुआ हैगा।

और ऑरेंज कलर का हेगा और मतलब जो गेट हेगा बहुत बड़ा सा है काटे का सा है ।